काले रंग से कलर किया गया है और ये बॉक्स पर कुछ लिखा हुआ है कुछ --

रंग रंग भी रंगे हैं और यहां बच्चे खेलते हैं कुदते हैं।

हम बचपन में साथ पढ़ते साथ घूमने जाते साथ --

यहाँ पे बहुत लोग तो पैर से आए हुए हैं बहुत लोग साइकिल से आए है बहुत लोग --

रुपया पे एक गरीब आदमी अपने घर के खाने पर।

ज्यादा पैसा ना होने गरीब --

भैंस भैंस अप-अपना --

क्रिकेट खेलने आए हैं और बहुत लोग तो बैठे हुए हैं घूम रहे हैं।

जहाँ पर बहुत सारे टैम्पू टैम्पू सब टैम्पू सब है जहाँ पे बहुत लोग आए हैं।

है जहां पे बहुत लोग आते हैं पेट्रोल लेने के लिए।

यहाँ पे बाहर में बैलून बैलून एक --

ई ब्लू कलर का टंगा हुआ है और यहाँ पे आपको जरूरत की हर एक चीज मिल सकती हैं जैसे कि कपड़े --

ये स्पेसिफिक मैप के बारे में मम बताया जाता है।

बहुत कुछ बाइक दो ठो लगी हुई है एक-एक ब्लू कलर की एक लाल कलर की।

यहाँ पर देख रहे है आप भी नंबर वन कार नंबर वन कार को सजाई गई है इतनी अच्छी तो --

यह इंडिया गेट है यहां पर छोटे-छोटे से

पेड़ है यहां पे लाइट रात के समय में लाइट जलने के लिए --